और एक स्टील का बर्तन भी नजर आ रहा है कुछ लकड़ी के चम्मच भी नजर आ रहे हैं।

यह जमीन में हरे रंग का कालीन बिछा हुआ और इस ऊपर कुछ बोर्ड भी लगाए गए हैं।

आसपास की दीवार को सफेद रंग से रंगा गया और दीवार में लाइटें लगाई गई है।

ऊपर के हिस्सों में एक भी काले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें द सिटी कैफे लिखा हुआ है।

यहां दृश्य एक तालाब का है जिसमें तालाब में हल्के फेन आए हुए नजर आ रहे हैं।

सामने की और नीले रंग का बोर्ड लगाया गया है और छतरी भी दिख रही है।

सामने की जमीन पर कई सारे वाहन भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और सामने की दीवार पर सफेद रंग से रंगा गया है ऊपर के हिस्सों में कई सारी लाइटें और पंखे लगाए गए हैं।

सामने और एक व्यक्ति भी दिख रहा है नीचे की जमीन सुरमई में रंग की है।

सामने की ओर एक शीशा का मेज भी दिख रहा है जिसमें कई सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं।

सामने की ओर एक बहोत बड़ी सी इमारत भी दिख रही है।

ऊपर की छत को बास के सपोर्ट से तिरपाल लगाया गया है।

यहां सामने की ओर कई सारी कुर्सियां और मेज रखी हुई भी दिख रही है।

सामने की और कुछ छोटी छोटी इमारतें भी दिख रही है जैसे सफेद।

और नीचे की जमीन में सफेद रंग का टाइल्स लगाया गया है।

पहाड़ में कई सारी जगह काई उई भी नजर आ रही हैं।